उसके कपड़े का रंग सफेद है और पेंट का रंग थोड़ा ग्रे है वो एक चप्पल पहन के है।

फोटो में हमको एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

इसका ऊपर मे रेड कलर और फूल का ड्राइंग करके है।

स्टोर ठीक बना के है।

पीछे में पहाड़ दिख रहा है।

पिंक और येलो रिब्बन दिखाई दे रहा है।

ऊपर में ए_सी लगा के है।

और बाइक के सामने में बड़ा बड़ा बिल्डिंग उठा के है।

बिल्डिंग के सामने में येलो व्हाइट गाड़ी दिखाई दे रहा है।

इसमें बहुत सारा टेबल चेयर ये सब बेच रहा है।

यह फोटो में हमको एक रास्ता दिखाई दे रहा है।

जो कि अंदर में ग्रीन कलर है।

आगे में ऑरेंज कलर का पेंट मारके हैं।

यहां अभी रेड कलर का कार को वाश कर रहा है।

पीछे में थोड़ा काला रंग का गाड़ी को खड़ा करके है।

पीछे में एक कंस्ट्रक्शन चल रहा है।

ये फोटो में हमको एक नाव दिखाई दे रहा है।

ये तस्वीर में हमको बहुत ज्यादा एनिमल ग्रास खा के दिखाई दे रहा है।

फेंसिंग का दृश्य और कुत्ता दिख रहा है।

और उसमें अलग अलग किस्म का सामान रखा हुआ है।

छोटा छोटा स्टूल भी रखा हुआ है।

कोई फोटो फोटो में एक शॉप टाइप का दिखाई दे रहा है।

जहां में साइड में कुछ रखे हैं।

जहाँ से रेद और यलो कलर का रिबन निकल के दिखाई दे रहा है।

टेबल दिख रहा है।

है घर का कलर थोड़ा ग्रे और सफेद रंग का है।

टेबल और चेयर के रंग भी थोड़ा ग्रे है।

उसमें एक आदमी खड़ा हो के है।

ऐप्पेल को जो कार्टून का ऊपर में रखा है।

प्लास्टिक दिखाई दे रहा है।

वाटरमेलन का कलर ग्रीन है और थोड़ा येलोविश है।

आंटी साड़ी पहन के है अंकल सूट पहन के है।

फोटो में बड़ा सा बिल्डिंग दिखाई दे रहा है।

दो ग्लास को जो खोल के रखा है।